कई तरह के वे खिलौने टाइप बच्चों के खेलने के लिए आइटम रखे हुए हैं यहां पर बीच में रास्ता है ऊपर की तरफ पर छायादारी बादल दिख रहे हैं।

बिल्कुल बीच में देखें तो बिजली का खंभा है यहां पर एरियल की की बो--

आदमी खड़े हैं ऊपर की तरफ बादल दिख रहे हैं पेड़ पौधे बहुत ही गेहरे हैं छायादार है।

यहां पर पठन पूरी चाय नाम का कोई ढाबा है दुकानें लगी हुई है।

दो बैल खड़े हैं। बैल के पीछे एक मूर्ति है। मूर्ति पे माला पहनी हुई हैं।